कई प्रकार के फोटो चिपकाये गए है दिवाल पे जो की बहुत ही अच्छा लग रहा है इस पे लाइटिंग पड़ रही है तो ये और भी अच्छा लग रहा है किसी हर एक में आदमी हाथ मिला रहा है कोई बैठे है या सामने से खड़े हो के फोटो खींचा रहे है इस में।

अंदर भी छोटे-छोटे खिड़की लगाए गए हैं जो की बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है इसमें देख सकते हैं ऊपर भी एक बहुत बड़ी लाइट लगाई गई है जो की बहुत अच्छा लग रहा है इसे देखने में ये प्रतीत होता है कि बहुत अच्छा घर बनाया गया है इसको।

जहां पे सभी गाड़ियों के टूटे-फूटे पार्ट मिलते हैं या बनाए जाते हैं।

घर बहुत ही अच्छा बनाया गया है इसपे घर के ऊपर एक झंडा भी लहराया गया है इस घर की खिड़कियाँ भी बहुत अच्छी बनाई गई है खिड़कियों में लोहे का प्रयोग किया गया है।

ये करकट का बहोत बड़ा हॉल बनाया गया है जिसमें रुकने की व्यवस्था बनाई गई है | यहाँ पे एक पेड़ है जो बहुत बड़ा है | जिसपे बहोत ही ज्यादा छाया दे रहा है उसके नीचे तमाम गाड़ियाँ खड़ी है आदमी खड़े हैं |

ये प्लेटफॉर्म है रेलवे स्टेशन है यहां पे पठरियाँ बिछाई गई है देख सकते हैं काफी आदमी यहां पे खड़ा होके रेल का इंतेज़ार कर रहे हैं जो की बहुत अच्छा लग रहा है।